सेब और किवी भी हैं ।

याहा पर योगा हो रहा हैं ।

और इधर बहुत सारी बाइक हैं ।

ये सुनसान सा जंगले हैं ।

और और यहाँ पर आकर एक बच्चा है जो

और यहां पर नो प्लास्टिक ऊपर --

ये गेम हैऔर इसमें लाइटें भी लगी हुई है।

और इसके साथ एक और दुकान है।

और ये इनती सारी बाइक हैं।

और एक महेश है एक और साथ मैं--

ऐ ऊपर की तरफ एक पंखा लगा हुआ है और यहां पर --

पर इस इधर सामने एक हिन्दी मे कुछ लिखा हुआ है औ--

ये एक जगह है और इसमे छोटे छोटे भी पौधे लगे हुए है ।

यहां पर बहुत सारी गाड़ियां हैं।